खिड़कियां लगी हुई है एक टेबल है जिसमें एक इंसान बैठा हुआ है।

बस के बाजू बहुत सारे दुकान है और बहुत सारे लोग दिख भी रहे हैं इसमें जाते आते--

इसमें एक बहोत बड़ा तालाब है लोग बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

बहुत सारी लेडिस है जो सर को ढके हुए--

और बहोत सारी बड़े बड़े पेड़े लगी हुई है।

और स्क्रीन के फीचर हैं इसमें तो इंसान खड़े हुए दिख रहे हैं दीवाल में टी_वी लगा हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के बाहर बच्चों का छोटा वाला ट्रेन है।

और पेड़ और पौधे लगे हुए हैं और पूरी लाइटिंग लगी हुई है अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

और एक ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ लड़का पैदल चल रहा है रोड की तरफ जा रहा है।

फूल का पेड़ है जो गमले में लगा हुआ है।

पूरी मतलब इनके ऊपर मारी जा रही है मतलब दिखाई जा रही है।